ये एक चित्र है ये एक चित्र है इस चित्र मे दीवार सामने दिख रही है पार्क है ये पार्क दिख रही है।

ये एक चित्र है इस चित्र मे एक होटल दिख रही है उस होटल मे दो चेयर है।

लिखा हुआ है कुछ शैम - कुछ पाउच वगैरह पैकेट वगैरह लगे हुए है लोहे का पाइप दिख रहा है व्हाइट कलर के पिलर दिख रहे है।